नदी भी दिखाई दे रही है।

एक गुम्बज भी दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पर हमें प्लास्टिक के आइटम भी दिखाई दे रहे हैं।

मैदान से चिपका हुआ एक नदी दिखाई दे रहा हैं यहाँ |

यहाँ पर हमे एक मारुती वैन दिखाई दे रही हैं और --

इस्पे एक माला चड़ा हुआ हैं। एक टॉवल भी दिखाई दे रहा हैं।

कुछ लोग चलते-फिरते दिखाई दे रहें हैं।

नीचे कारपेट लगा हुआ है।

पीछे एक पेट्रोल पंप भी दिखाई दे रहा हैं।

और कुछ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और हमें एक दुकान दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग आराम करते हुए दिखाई दे रहे।

यहाँ पर हमे बहुत सारे लाइट लैंप दिखाई दे रहे हैं।

और ऊपर की ओर केले झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

पीले कलर की पॉलीथींस भी दिखाई दे रही हैं पीछे की ओर बहुत सारे --

और दूल्हे ने मैरून कलर का पजामा और गोल्डन कलर का --

जहाँ पर एक स्टेशनरी का सामान रखा है जहाँ पर कलर वाले पेंसिल और पेनस दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर हमे एक पक्की सड़क दिखाई दे रही हैं।